चद्दर का शेड दिखा दे रहा हे लोहे के पाइप दिखाई दे रहे हैं ऊपर।

पीछे के साइड से एक पोस्टर लगा हुआ दिख रहा है। लड़की डांस करते हुए दिखा दे रही है पोस्टर पर। नीचे के साइड से दरी बिछी हुई दिख रही है।

नीले कलर का फ्रिज दिखाई दे रहा है फ्रिज के अन्दर कुछ बोटल दिखाई दे रही है।

पास में टे काले कलर का टब में ऊपर नीले कलर की पन्नी रखी हुई दिखाई दे रही है।

लाल दरी बिछाई हुई नजर आ रही है। एक आदमी जाते हुए नजर आ रहा है। पीठ पर काले कलर का बैग है। हाथ मे पेपर है।

ग्रीन कलर की दिवाल दिखाई दे रही है पीछे की साइड से।

चद्दर का शेड बना हुआ दिखाई दे रहा है लोहे के पाइप दिखाई दे रही है लाइट जलते हुए नजर आ रही है।

कटे हुए झाड़ के पास में पीले कलर का बोर्ड दिख रहा है दूर एक वाइट कलर की कार दिखाई दे रही है।

वेल्डिंग लगी हुई दिख रही है एक जेंट्स और लेडीज को दिखाई दे रही है जो पीले कलर की साड़ी पहनी हुए --

व्हाइट कलर की जाली पर उल्लू बैठा हुआ दिखाई दे रहा है।

जिसमे पीला और हरा कलर करा हुआ है नीचे की साइड में रेड कलर दिखाई दे रहा है घास दिखाई दे रही है।

स्विमिंग पुल दिखाई दे रहा है नीले कलर के है इसपे --

अंदर के साइड में स्मारक बना दिख रहा है उसके ऊपर रेड कलर दिया हुआ है ऊपर पुतला खड़ा दिखाई दे रहा है।